यह एक नारियल का पेड़ है जो कि देखने में अत्यंत सुंदर लग रहा है।

किन्हीं को पूजा करना है तो वो यहाँ से फूल ले जा सकती है।